यहां पे एक घर है जिस पर लिखा हुआ है पच्चीस संचेतना केंद्र उस पर पक्षियों का चित्र बनाया हुआ है ।

पेंट की छोटी-बड़ी बाल्टियाँ धरी हुई है और एक काउंटर है काउंटर के बगल में एक आदमी बैठा हुआ है।

जिसमे बोहोत प्रकार के फूल पौधे धरे हुए हैं इसके पास तीन चार आदमी खड़े हैं।

एक दुकान है मिठाई का जिसमें बहोत सारे मिठाइयां रखी हुई है।

एक दुकान है जो पूरा फूलो से सजाया गया है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है सोसाइटी ज्वेलेरस ---

और अगल-बगल में बहुत सारे छोटी-छोटी मूर्तियां है जो लक्ष्मीजी गणेशजी के है पंडाल को पुरा बढ़िया से सजाया गया है फूल से--

खेत है खेत में धान की बुआई की गई है जिसमें पूरा पानी लगा हुआ है ।

और यहाँ पर लाइट बर रहा रात का रात है ।